पूल पूल के नीचे पूल हैं उसके नीचे नदी हैं नदी के नदी के सेफ्टी के लिए अभी आदमी के लिए नेट लगा हुआ हैं आसमान बहुत नीला हैं सब व--

पेसेंजर सब बैठ रे हैं ऑटो वाले सब लेके जा रहे हैं बोहत सारे ऑटो हैं हर कम्पनी के ऑटो रखे हुए हैं वहाँ पे कुछ आदमी लोग खड़े हुए हैं एक रोड है ना साफ़ सुथरा बहुत अच्छा रोड लग रहा है वहाँ पे आसमान ग्रीन कलर के पेड़ और सब पेड़-पौधे हैं आसमान है।

हिया पर बादल हेय ग्रीन कलर के यहां पे बहुत सारे आदमी हेय यहां पे पेड़-पौधे चारों तरफ से हरिहर कलर का घास भी लगा हुआ है यहां पे नारियल का पेड़ है खजूर का पेड़ है।